ये किसी संग्रहालय या सैनी समर का शीशा हो सकता है।

इस तस्वीर में एक छोटा कार्यालय सेट अप दिखाई दे रहा है।

कमरे की दीवारें हरे रंग की है और पीछे खिड़की है।

यह एक पहाड़ी क्षेत्र की तस्वीर है जहां पत्थरों के बीच सीढ़ियां बनाई गई है जो ऊपर की ओर जाती है।

बगल वाले बैनर में हिंदी में न्यू केरला होटल लिखा हुआ है।

ये काउंटर का कांच के कभर के साथ सामने रखा है।

जो शायद एक सार्वजनिक स्थान या स्टेशन को सकता है।

अलमारी में प्लास्टिक कंटेनर में ड्राई फ्रूट चॉकलेट कुकीज एंड केक दिख रहे हैं।

और आकाश हल्के नीले और रंगे रंगों से भरा हुआ है।

जो संभवत एक बैठक या किसी अन्य आधिकारिक संस्था का प्रतीत होता है ।

यह एक महिला कुर्सी पर बैठी हुई है जो सामने बैठे लोगों को समूह को कुछ समझ रही है ।

यह एक खुला सार्वजनिक स्थान है जहां कुछ लोग पैदल चल रहे हैं और एक रिक्शा भी दिखाई दे रहा है।